यह एक हमें बहोत ही अच्छा और बहोत ही सुंदर सा एक मूर्ति दिखाया गया है। जो देखने में काफी सुंदर और बड़ा है। इसे --

देखने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं और यह दिखने में भी माँ काली का मूर्ति जैसा लगता है और यहाँ बहुत दूर दूर से इनको माँ काली को लोग पूजा करने के लिए भी आते हैं और यह बहुत बड़ा और बहुत ही सुन्दर बहुत ही भव्य मूर्ति है।